और दो लेडिस खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक गगरी भी हे। थाली भी है।

सोफा है ब्लू कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है चलने का रास्ता दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रहा है.

छोटा छोटा घास दिखाई दे रहा हे हरा कलर --

इधर बैठे हुए मैट पर--

बहुत अच्छा फूल दिखाई दे रहा है.

कुर्सी दिखाई दे रहा हैं.

ट्यूशन क्लास दिखाई दे रहा हे.

बहुत बड़ा बिल्डिंग है.

मैरिज फंक्शन दिखाई दे रहा है।

गायक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ औरत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

स्टेशन है। लातेहारी स्टेशन --

दिखाई दे रहा है बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है.

बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

बोहोत बड़ा बोहोत सारा बॉक्स